काफ़ी सुंदर नज़र आ रहा है बहुत सुंदर जगह है आप देख सकते हैं आप देख सकते काफी दूर तक--

लगता है बहुत पुराना कार है।